दीवाल मा जी एक माता रानी जी कू कैलेंडर छ लग्युं यख मा जी कई सारी स्प्रे छन रख्यां यखम पाणी की बोतल भी छन रखीं।

का अनुसार एक मजीजु छे एक बडी बारीकी इमारत करा एक मजी ये इमारत देखने में कोई बैंक करन लगन लग्यो भीतर एक कमरा करा एक मजी यू भारतीय स्टेट बैंक को एक कोई ए_टी_एम बिछन लगन लग्यो एक मजी कुछ लोग भी चनाया।

ये क अनुसार यखमा जी एक बुडिया और एक भुड्डी करयं दिख्यां लगीं यखमा जी एक बैंक च देखणु में जी यो बैंक भारतीय स्टेट बैंक च लागण लग्युं यख दिवार म जी कई सारा पोस्टर करण लाग्यां।

यख मा जी जाली का जंगला दिखेणा पिछाड़ीम कई सारा लोगन सामनेम एक बड़ी बारिकी इमारता। यख मा जी कई सारा हरयां भरयां डाला भी छन दिखेण लग्यां।

यख मा जी कई सारा जनरेटर करण दिखेण लग्यां यख मा जी नीलू रंग यूं फर हुयुं यख म जी कई सारी सीढ़ी छन दिखेण लगीं यख म जी यू जनरेटर छा यखम एक लाल रंग कु ड्रम करा रख्युं यख पिछाड़ी में एक बड़ी बारीकी इमारत करा दिखेण लगीं।